और एक हाथ निचे की तरफ कर रखा है और काफी अच्छा नर्तय करते दिखाय दे रही है चारो लडकिया--

और एक खाडा खोदते दिखाई दे रहा है और यहा पर व्यक्ति है जिन्होंने हाथ में फावड़ा ले रखा है और यह पौधा लगाने में कोशिश कर रहा है।